एक औरत सब्जी बेच रही है दिन का समय दिखाई दे रहा है।

पानी पानी दिखाई दे रहा है दूर दूर तक--

इसमें पांच पोर्ट दिखाई दे रही है।

दीवार का रंग सफेद है दिन का समय है।

हाथ तुक्की करने पर लगे हुए हैं।

नीचे साइकिल के साथ कई बच्चे खड़े हुए हैं।

दिन का समय दिखाई दे रहा है।

इसके सामने नीचे दो दुकानें बनी हुई हैं।

इसमें आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

मात्रा में गाड़ियों हैं और गाड़ी में बंद हैं।

इसमें बहुत ज्यादा डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।